जैसे आटा चावल ये सब ची --

ये बहुत पाक जगह होता है जैसे हम लोग हिन्दुओं में जैसे मंदिर होता है उसी तरह मुस्लिमों में मस्जिद होता है।

पहाड़ी ये पहाड़ी ईलाका है। पहाड़ी ईलाका बहोत ही सुन्दर लगता है। यहाँ पे सिन्धी सब अच्छा आता है। लोग जाते हैं पहाडो में घुमने वादियों में घुमने। जैसे कुलु मनाली हिमालय पर्वत किधर जाते है लोग। वहाँ पे योगी ओगी लोग भी जाते हैं।

कीपिंग वगेरा लोग कर देते है गोल्कीपर बनते थे हम भी कभी कभी।

पार्क है इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं और फाउंटेन भी बना हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखने में यहां का सिनरी वगैरह अच्छा है हर शहर में एक पार्क जरूर होना चाहिए जहां पर लोग जा सके थोड़ा इंजॉय कर सके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके बढ़िया बात --

फोटो में दिख रहा है कि एक शिप है छोटा-सा।

जो कि समुन्द्र में और बड़े-बड़े नदी और झीलों में पाया जाता है। मतलब कुछ लोग उसपे ट्रेवल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या पार करने के लिए करते हैं। हमने भी किया था जब हम कोलकता गये थे तो वहां पे जो हुगली नदी है उसको पार करने के लिए हमने भी चढ़ा --

हमें दिख रहा है कि जिम है जिम में लोग जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बॉडी वडी बनाने के लिए बहुत सारे जिम में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं डंबल वगैरह पुशअप और पुलअप के लिए भी खासकर होता है अलग सारे मशीन --

पिक्चर में दिख रहा है कि मंदिर है कोई। ऊपर में दुर्गा-ओर्गा जी का फोटो मूर्ति भी दिखरा है। मंदिर बोहोत जरूरी होता है क्योंकि ये हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। पूजा क-अ-पूजा हम लोग करते हैं वो हम लोग के लिए कॉन्फिडेंस लाता है तो ठीक है। यहां पे आस्था हम लोग का दिखता है। भ --

एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज बहुत सही रहता है ये सेफ्टी बरतना बहुत जरूरी है।

पिक्चर में दिख रहा है कि हरे कलर का गेट है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और आसपास दीवाल पे भी बहुत ही सुंदर वो चित्र बना हुआ है और जिसका हमको पिलर दिख रहा है उस पर हमको झंडे का तिरंगा का सारे रंग दिख रहे हैं।

ट्रक बहुत ही अच्छा चीज होता है मतलब सामान वमान इधर-उधर करने के लिए बहुत लोग को देखे हैं ट्रक कर चलाते हुए और ट्रक ड्राइवर्स को मेरी चाची थी वो भी ट्रक चलाती थी।

तो मैंने पहिली बार उन्ही को देखा था ट्रक चलाते हुए।